और यहाँ एक जेंट्स हैं जो की खड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में सुंदर भी है। गाड़ी ऐसा लग रहा है नया गाड़ी है।

जो की बहुत अच्छा लग रहा है देख के और सुंदर भी है ये जग।

खाने-पीने का सामान है यहाँ पर रखा गया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत सुंदर भी है यहाँ पर जगह।

पूरा जेंट्स भी यहाँ पर खड़े हैं। ठीक-ठाक लग रहा है यहाँ। अच्छा --

साधू-संत लग रहें हैं लोग यहाँ पर। साधू लोग हैं। यहाँ पर पेड़-पौधा हर चीज बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा है।